हेलो एवरीवन ये एक फॉर्म है और ये फॉर्म लेके जाते है फेमेलिस को लेके एन्जॉयमेंट्स के लिए डिनर के लिए हम लोग वहा जाते है देन वहाँ पर हम।

वहां पर हम बर्थडे सेलिब्रेट भी कर सकते हैं यहां पे हम लोग कुछ पार्टी शार्टी भी कर सकते हैं एक फार्म हाउस है यहां पर तीन --

और कॉलेज का कलर है ग्रीन कलर --

और कॉलेज क्यों आते हैं पढ़ने एजुकेशन्स के लिए। टाइम --

हेलो गुड मॉर्निंग ये हमें दिखाई दिखाई पड़ रहा हैं कि एक क्रिस्चियनो का ।

यहाँ आके मन की शांति के थ्रू मन के शांति मिलती है इसके थ्रू आते हैं सभी लोग और यहाँ पर कुछ।

हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन ये क्लासरूम है और यहाँ पर स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है।

सब के बैग्ज दिख रहे हैं नॉटबुक दिख रहे हैं ।

और हर किसी को करना चाहिए यहाँ पर फीमेल्स दिखाई पड़ रही हैं ए--

और आजो बाजु में अ पेड़ हैं बसीस हैं ।

हेलो गुड मॉर्निंग ये हमें मोबाइल का शॉप दिख रहा है यहां पर वीवो कंपनी के मोबाइल्स मिलते हैं।

और हमको फ़ोन क्यों इंपोर्टेंट लगता है बहुत ज्यादा हर किसी को फोन इम्पोर्टेंट लगता है कॉलिंग के लिए एस_एम_एस के लिए --

बोर्ड्स लगे हैं औरं इमेजेस लगे हुए हैं यहां पर।

हेलो गुड़ मारनी यह एक खेत है किसी के यहाँ पर खेत दिखाई दे रहा है गाय है ।

हीरो कम्पनी का है और यहां पर हमको बाइक्स दिख रही है है।

शिवलिंग था ना फिर विसिंकी गांव और जो मेन वाला था ना वेलकम वाला वो वाला ब्रीच के नीचे --

अ अ अ मुस्लिम पट्टी से लेके से लेके सर्दी है और बहुत प्यारा व्यू है अ--

अ अ ओके हम इन्जॉय करने के लिए आते हैं छुट्टी वकेशन मनाने जाते हैं हॉलिडेज मनाने जाते हैं।

हैलो एक शॉप है बुक्स की --

वैसी लगी हुई हैं शॉप्स पे विंडोज़ हैं ।

मल्टीपल्स टाइप के शोपीस अवेलेबल रखे हैं और बहोत सारे --

सो वेरी ब्यूटीफुल है ये बहुत ज्यादा --

पब्लिक्स ऑटो गाड़ियास टू व्हीलरस साइकिल्स बिल्डिंग्स ट्रीज --